एक बैंक है यहां एक आदमी--

कुछ कैशियर से बैंक एम्पलाई से बात कर रही है और और एक आदमी ब्लू कलर श--

ये एक पेट्रोल बंक है इधर वो एक पेट्रोल बंक का उम बिल्डिंग दिखा रही है।

आगे बोर्ड भी है वाइट कलर का दूर से--

पॉल्यूशन चेक नाम के बोर्ड है यहां ये एक कमरा कमरा जैसे दिख रही है कि दू दूर से वह पैट्रोल पंप है।

ये तो एक प्लेग्राउंड जैसी हैं यहां तो--

ओअ करेंट पोल्स दिखा रही है दो स्ट्रीट लाइट्स दिखा रही है नीचे लाल कलर का एक डस्टबिन दिखा रही है।

वहा दो बिल्डिंग के ऊपर कुछ बोर्ड दिखा रही है ब्लू --

और पिलर बड़ा पिलर दिखा रही है और लाइट ग्रीन रंग का कुछ शर्ट पहन कर एक आदमी--

ये तो एक यहां पतांजलि का दुकान जैसी लग रही है यहां बाबा रामदेव का फोटो दिखा रही है ग्रीन कलर का।

बोर्ड पे और यहां कुछ सामान दिखा रही है पैकेट्स पे।

ये तो एक कॉपी स्टोर्स जैसी ही लग रही है काफ़ी काफी कमीशन है यहाँ यहाँ तो बोर्डिंग्स में कुछ--

ये तो एक बंगला जैसी है यहां अं ऊपर बंगला के ऊपर ए_सी का कंप कंप्रेसर भी दिख रही है।

तीन गाड़ियाँ भी हैं एक व्हाइट कलर का एक ब्लू कलर का हैं।